यह एक रिसेप्शन लग रहा है जहाँ पे एक पंखा लगा है और सामने दो ऑफिस की गेट है।

और यहां पे एक फ्रिज भी रखा है फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स रखी है सामने भगवान की--

इस स्कूल का नाम एस डी पब्लिक स्कूल सेक्टर बत्तीस सी चंडीगढ़ है।

हाईवे है जहाँ रोड किनारे काफी सारी गाडियाँ खड़ी है।

यहाँ पर कुछ बच्चे है कुछ बुजुर्ग है कुछ महिलायें है सामने ऊंची-ऊंची इमार्ते हैं इमारत का कलर --

काले कलर का पर्दा लगा हुआ है काफी सारी लाइटें भी लगी हैं।

कुछ लोग वहाँ साइड में आराम कर रहे हैं।

कुछ लड़कियाँ बैठी है टेबल पे मेनू रखा हुआ है।

इसके ए गेट का कलर ब्लैक है यहां पे काफी सारी पेड़ पौधे हैं।

पेड़ पौधे हरे भरे है छोटे-छोटे गमले रखे हुए है।

काफी सारे हरे-भरे प्राक्रतिक पौधे है कुछ बेठने के लिए चेयर्स बनाई गई हैं सामने एक--

छत भी दिख रहा है जिसका कलर लाल है।

यह एक चर्च लग रहा है चर्च के बहार गेट का कलर काला है ऊपर में ए--

यह एक शोरूम लग रहा है जहां पे काफी सारी मोबाइल के कवर्स रखे हैं।

एक भी इसमें कस्टमर हम को नजर नहीं आ रहा है।

एक पेर का कटिंग किया हुआ है जो की बिलकुल जिराफ की तरह लगरा है सामने एक स्ट्रीट लाइट लगी है।

एक लाइट लगी है घड़ी में टाइम बारह बज के पच्चीस मिनट हो रहा है।

यह एक हवेली है जोकि बहोत बड़ी इमारत लग रही है इसमें काफी सारी खिड़कियां है काफी सारे बालकोनी है।

यह एक खेत है देखने से चाय पत्ती का खेत लग रहा है यहाँ पे काफी सारे छोटे-बड़े पोधे लगे हैं।

बैरिकेट लगा है जिसका कलर हरा है।

वाइट है बाएँ साइड में वॉचमन का रूम बना है दाहिने साइड में पूरा दिवाल घेरा हुआ है।

यह एक शॉपिंग काम्प्लेक्स है जहाँ पे काफी सारी सामाने हैं।

आये हैं जो साइकिल खरीदने आये हैं साइकिल देखने के लिए भी आये हैं ऊपर पंखे लगे है जो चल रहे हैं जो चालू हैं।

नीचे में कुछ कार्टून्स रखे हैं ऊपर में कुछ लाइटें लगी हैं।

ईमारत लग रही हैं जहां ऊपर में लाइन से एसिया लगी है सामने कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं कुछ विद्यार्थी भी हैं।

कुछ शांत जगह है बिलकुल कोई भी आने-जाने वाला भी नहीं है।

यहां पे एक भवन है यहां पे कुछ पेर है कुछ हुडिंग्स लगी हुई हैं हुडिंग्स पे कुछ परचार है।

कुछ महिलायें हैं कुछ पुरुष हैं।

यहाँ एक दुकनदार है यहाँ एक कस्टमर भी है जो हेलमेट लेके खरा है।

काफी दुकाने हैं यहाँ एक किराना स्टोर है।

यह एक गार्डेन है जहाँ काफी सारे पेड़ हैं।

यह एक बस स्टैंड है जहाँ पे काफी सारी बसें लगी हुई हैं।

काफी सारी ईंटें हैं सामने बिल्डिंग है।

कुछ लोग चेयर पर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं।

काफी सारे पंखे लगे हैं काफी सारी लाइटें लगी है कुछ पानी की बोटलें हैं।